जहां पर सेल्स पर्सन बैठे हैं।

इस पिक्चर में बहोत ही सुंदर बटरफ्लाई पार्क दिखाया गया है।

इस पिक्चर में मेहर चंद महाजन डी_ए_वी कॉलेज --

इस पिक्चर में एक ड्राई क्लिन

पिक्चर बहोत ही साफ सुथरी दिखाई दे रही हैं पार्क की।

एक झील दिखाई दे रही है जिसमें--